दो तीन बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही--

इस बिल्डिंग में बैंक और यूनियन बैंक लग रहा है मुझे।

थोड़ा सा घास भी लगा है चट्टान के बीच में।

ये चारों ओर से जालियों से पैक है।